यहाँ पर एक बोहत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग में अअ लाल कलर के जीने लगे हुए है यहाँ पर एक ब्लेक कलर की रेलिंग लगी हुई है जो कि लोहे की नज़र आ रही है।

वह एक बहुत बडा ग्राउंड दिखाई दे जा है इस ग्राउंड में काफी सारी गर्ल्स दिखाई दे रही है जिन्होंने अ व्हाइट कलर की ड्रेस और रेड दुपट्टा डाला हुआ है।

एक मंच दिखाई दे रहा है इस मंच पर तीन गर्ल्स डांस करती हुई नजर आ रही हैं।